यहां पर एक टेंट लगा हुआ है काफी सुंदर डेकोरेट --

यहां पर एक प्लेटफार्म है और ट्रैक पर रेड कलर की ट्रेन खड़ी है सामने की तरफ।

यहां पर एक फवारा लगा हुआ है इसके आसपास बहुत सारी ब्लू कलर की लाइट लगी।

व्हाइट कलर की है पीछे की तरफ यहां कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

जो ब्लैक और गोल्डन और ब्राउन कलर का लकड़ी का--

यहां पर एक ग्रीन कलर की डीपी लगी हुई है जो मशीन में--

पीछे यहां पर कुछ रूम बने हुए हैं जो व्हाइट कलर --

कुछ लोग पीछे की तरफ खड़े हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लोहे के सरिए पड़े हुए हैं नीचे।

सीमेंट की टाइल्स लगी हुई है नीचे की तरफ।

पोस्टर लगे हुए हैं नीले कलर की बहोत सारी यहां पर मशीने भी--

ब्लैक कलर की गाती है ऊपर की तरफ बहुत से टायर।

किचन है और इसमें जो अलमारियां बनी हैं।

ऊपर की तरफ और काफी क्लीन है पूरा ही किचन।

यहां पर एक रूम है जो ब्राउन कलर का है जिसमें येलो लाइट लगी है।

सामने कुछ सोफे और चेयर रखी है साई ओ और सा साइड में भी कुछ टेबल और चेयर --

ए_सी रखे हुए हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा है।

और जस्ट सामने ही एक बड़ा वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है इसका जो फ्रंट है वो पूरा ही मिरर का बना है।

यहां पर एक शॉप है जो पीछे से ब्राउन कलर की है जिसमें कांच के बहोत से--

यहां पर एक शॉप है जहां पे कुछ फूड आइटम्स बन रहे है जहां--

यहां पर एक व्यक्ति चेयर पर बैठे हुए हैं एक लोहे का ड्रम रखा है ऊपर काफी ज्यादा यहां पर सामान--

सामान भरा हुआ है ऊपर की तरफ ऑरेंज वाइट और ब्लू कलर के ब--

गेट पर भी काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है। यहां --

और इस पर जो फैसिलिटीज है वो लिखी हुई है पोस्टर के ऊपर दी गई है।

यहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

पौधे और घास है इन पत्थरों पर और इनके बीच में छोटे पत्थर मिट्टियां भी है इन पत्थरों के बीच में।

यहां पर एक मेला लगा हुआ है इसमें बहुत से झूले लगे हुए हैं बहुत से लोग भी अलग-अलग तरह--

इस साइड में एक टावर भी है आगे की तरफ स्विमिंग पूल वाटर पार्क भी है जो पूरा--

ब्लू और ग्रीन कलर का बना हुआ है आसपास बहुत सी जगह खाली है हरियाली हैं।

जो वाइट और रेड कलर का है इस पर उसके--

नेमिंग भी की गई है आसपास यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग होते है और एक बड़ी चिमनी है जो--

वाइट और रेड कलर की है और पूरा ग्राउंड खाली है यहां पर कुछ पौधे लगे हुए हैं घास --

यहां पर बहुत सारी वाइट कलर की वाशिंग मशीन रखी है।

और पीछे ब्लैक पर्दे लगे हैं ऐ_सी लगे हुए हैं वाइट और येलो ऊपर लाइट लगी हुई है।

और नीचे की तरफ जो फर्स है वो भी पूरा ही ब्राउन कलर का है।

और यहां पर दूसरा भी बहुत सा सामान रखा है।

यहां पर एक रास्ता है और दोनों तरफ व्हाइट कलर की रेलिंग बनी हुई है।

और एक गोल ब्राउन कलर की डिजाइन बनी हुई हैं येलो कलर का कुछ बड़ा सा पोस्टर लगा--

इसे पूरा फूलों से सजाया गया है यह अंदर से पूरा वाइट कलर का है इसमें ब्लू लाइट लगी है।

यहां पर एक शॉप है शॉप में बहुत सारी कलरफुल स्वेटर लगी हुई है।